यहां पर अ इंडियन झंडा है और बड़ी ट्रेन है और सब विंडो ऑफ है।

अं मूर्ति खड़ी है उधर भीम ऐसा लिखा है इधर बहोत इंसान बैठे हैं।